ये फोटो में बहुत सारा ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहें।

ये इमेज में दिखाई दे रहा है लाइट येलो कलर का जलते हुए।

और ये इमेज में जो सिलेंडर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये रूम का कलर व्हाइट है।

और ई फोटो में घर बड़ा सा होकर पिंक और व्हाइट होकर दिखाई दे रहा है।

और ये इमेज में एक गेट भि दिखाई दे रहा जो लोहा से बनाया हुआ ब्लैक और येलो कलर --

ये इमेज में बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

ये दुकान में क्यू आर कोड भी दिखाई दे रहा है।